जहां काफी सारे बुक्स पेन पेंसिल रखे हुएं हैं और कम्पास बॉक्स भी नजर--

इस तस्वीर में एक घास की झोपड़ी बनी हुई है जहां टिकट काउंटर लिखा हुआ--

पीछे ग्रीन कलर की दीवाल है।